क्युकी यहाँ पे बोर्ड लाग हुआ है डाक्टर फर --

उस उस हासन और यहाँ पे खिड़की है।

और फोर्टीन फेब्रुअरी दिख रहा है।

और जैकेट पहने हुए है और उनकी जैकेट ग्रीन और ब्लेक कलर की है।

और दूर पेड़ लगे हुए हैं।